एक दुकान है दुकान का नाम है रेमंड स्टोर | हिन्दी में रेमंड स्टोर लिखा हुआ है रेड कलर का बोर्ड है।

इस तस्वीर मे एक जगह पे एक दिवार का कलर --

कैंची पेन और चम्मच दिख रहा है। टेबल भी लगा हुआ है। पंखा ऊपर टंगा हुआ है।

यहां पर तस्वीर में एक नदी के आस-पास हरियाली छाई हुई है ।

यहाँ पर कुछ लोग ढोल और बाजा बजा रहे है। कुछ लोग गाना गा रहे है।

जि जिसके आगे फूल के गमले और लाल पीले फूल के गमले और लाइटे लगे हुए है।

तस्वीर में एक सुंदर सा बगीचा दिख रहा है जहाँ एक औरत जा रही है।

इस तस्वीर में कुछ भगवान के मूर्तियाँ दिख रही है।